इसमे बहुत हरी घासे लगी हुई है। तथा बहुत पेड़ पौधे भी देखे जा सकते है। जिनमे कुछ नारियल के पेड़ है।

इस तस्वीर में आप देख सकते है की ट्रे में बहुत सारा प्याज भरा हुआ है जहा जीतने भी ट्रे है उन सब मे प्याज भरा हुआ है।

इस तस्वीर मे आप देख सकते है कि बहुत सारे मूर्तिया लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक पहाड़ को दर्शाया गया है जिसके ऊपर बहुत सारी घास हरी-हरी लगी हुई है तथा उसके नीचे बहुत सारे पेड़-पौधे देखे जा सकते हैं।

जिनमे में अनार कीवी सेब पपीता अंगूर इत्यादि है और इसके नीचे लाल रंग का एक प्लास्टिक बिछा हुआ है।